जहां पर कुछ बच्चे कार्ड सिख रहे--

इसमें एक ब्लैक कलर की कार जो एक एक्सीडेंट में बिल्कुल टूट गई है।

आगे से भी टूटी हुई है और ऊपर से--

यह फोटो या तो गणतंत्र दिवस का है या फिर स्वतंत्रता दिवस--

यह जो सामने दुकान दिखाई दे रही है यह एक ज्वेलरी की दुकान है।

ये बहुत सारे व्यक्ति भी बैठे हुए हैं।

यह किसी बुक स्टोर दुकान की फोटो है।

यह किसी ट्रैक्टर फैक्ट्री का फोटो है।

बाहर एक रिक्शा साइड में नजर आ रही--

कुछ सामान खरीद रहे हैं।

और इसमें बच्चों के बुजुर्गों के सबके कपड़े रखे हुए हैं और कुछ टंगे हुए भी हैं।

दो दुकानें भी नजर आ रही हैं।

यह किसी पार्क का फोटो है।

और पीछे एक बिल्डिंग भी बनी हुई है।

और सामने भी कुछ ग्लिसरीन वगैरा रखी हुई हैं।

जिसमें बहुत सारा सामान रखा हुआ है।

समान सामने की ओर लटका हुआ भी है।

खाने के लिए इनको इतने सारे पर्दे यहां पे लगाए गए हैं।

और गाटरों पर हरे कलर के अ मैट भी पड़े हुए हैं और --

इस फोटो में सामने एक मकान दिखाई दे रहा है।

और वह मकान बहुत सारे पेड़ पौधे से गिरा हुआ हैं।

जिसके आसपास बहुत सारे व्यक्ति खड़े हुए हैं जो फोटो खिंचवा रहे हैं।

यह एक मैरिज हॉल का फोटो है।

एक व्यक्ती यहां प्लेट उठा भी रहा है।

किसी व्यक्ति को इनाम दिए जा रहे हैं या ट्रॉफी दी जा रही है।

जिससे उसे सम्मानित किया जा रहा है।

इसमें अंदर काफी सारे व्यक्ति बैठे हुए हैं जो खाना खा रहे हैं।

और सामने कुछ व्यक्ति जो खाना बना रहे--

और कुछ व्यक्ति जो खाना सर्व कर रहे हैं।

दिखाई दे रही है और साइड में एक और लड़की दिखाई दे रही है।

यह किसी इलेक्ट्रिशियन दुकान है।

कुछ बॉटल भी पानी की रखी हुई है नीचे की ओर।

जिस पर कुछ व्यक्ति चल रहे हैं या घूम रहे हैं।

उसके साइड में भी एक कार की फोटो नजर आ रही है हल्की सी।

उसके पीछे घास नजर आ रहा है जिसकी कटिंग हो रही है।

जिसमें छोटे हाथी में उसको लादा जा--

जो कि इधर उधर घूम रहे--

साइड में एक जनरेटर भी लगा हुआ है जोकि बिजली के लिए--

यह एक दुकान का फोटो है जिसमें एक साइड कुछ टायर नजर आ रहे हैं।

यहां पर एक बोर्ड भी नजर आ रहा है।

ऊपर देवी साइड में लगे हुए हैं।

पेड़ पौधे भी छोटे छोटे लगाए हुए हैं।

उसके सामने बहुत सारे बच्चे बैठे हुए हैं।

यह फोटो किसी दुकान का लिया गया हुआ है।

और उसके सामने एक कुर्सी भी पड़ी है उस दुकान के और जो है ए टू जेड मोटर ब दुकान है। इसके पास में बाइक भी खड़ी --

उसके पास से कुछ व्यक्ति भी घूम रहे--

यह फोटो किसी शादी का है जिसमें पति पत्नी आगे बैठे हैं उनके पीछे उनके गार्जियन खड़े हैं।

और पीछे बहोत डिजाइन से फूल पत्तियों से सजा हुआ है।